है और यहां पे देख सकते हो आसमान भी दिख रहा है इसा--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

अठ है ये अच्छा दिख रहा है और दीवार पे भी अच्छी टाइल लगी हुई है।

ये दो बड़े बड़े हुए है और यहां पे ईट ही ईट पड़े हुए है आसमान दिख रहा है हरियाली हरियाली दिख रही है।

ये बहुत सारे आदमी बैठे हुए है और यहां पे हनुमान जी की तस्वीर दिख रही है ये यहां पे ह ह हनुमान जी --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

ओपेन कर रखा है यहां पे आप देख सकते हो--

दरवाजा दिख रही है ज यहां पे चखियां भी दिख रही है और वां नीला डब्बा टब भी रखा हुआ है।

लोकेशन दिख रही है यहां पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं।

बैठने के भी झूले बैठने की भी सीट है और झूले हैं भी है बच्चों के भी हैं यहां पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

हरा हरा पार्क दिख रहा है एक पार्क है इसमें यहां पे--

बच्चे खेलते हैं और यहाँ पे झूले वी दिख रहें हैं।

यहां पे देख सकती हो आप यहां पे ये आदमी बैठा हुआ है।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

दूध की निप्पल भी रखी हुई है यहां पे आप देख सकते हो रिमोट की सेल भी--

यहां पे आप देख सकते दर्शन के लिए क्लीनिक का हुआ डॉक्टर है।

और यहां पे ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है और यहां पे इन्होने चप्पल निकाल रखी है।